यहाँ पे दौड़ रहे हैं। कुछ लोग बैठे हुए हैं।

बहोत सारे कुर्सी लगे हुए हैं बगल में यहाँ पे बहोत बड़े बड़े नारियल का पेड़ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। मैदान मे --

इस मैरेज होम में बहुत सारे लोग बुक करने के लिए आते हैं साड़ी के लिए यहाँ पे बहुत सारे लाइट्स --

बोहोत सारे आदमी आए हुए हैं। यहाँ पे बोहोत सारी चीजें लगी हुई हैं। चिप्स चॉकलेट बिस्किट बोहोत सारे कोल्ड ड्रिंक्स --

यहाँ पे उसका मसाज किया जा रहा है। यहाँ पे तरह-तरह की मसाज की मशीनें रखी हुई हैं। यहाँ पे इस रूम में बड़ा-सा --